एक गुफा दिख रही है पहाड़ है।

और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी है।

और पानी गैहरा है ऐसा दिख रहा है।

टेबल को ताला लगाया है ऊपर लाइट्स है ऐसा दिख रहा है।

आरना सुपर मार्केट संपूर्ण किराना एवं जनरल स्टोर ऐसा लिखा हुआ है।

ये एक पोस्टर है पोस्टर पर लिखा है मंडवा महल छत्तीसगढ़ पर्यटन।

ऊपर सिल्वर कलर है और पीछे पेड़ है।